यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जि जिन्हें लाइटिंग से --

जिम कर रहे हैं सभी जगह सारा लाइट जल रही है और जिम --

तोता के बच्चे है खेल रहे है और बैठे हुए हैं एक पिंजरे के अंदर और पिंजरा --